इमेज मे एक इम्प्रेस हैयर सलून दिखाया गया है जिसके अन बाहर मे कुछ तस्वीरे लगी हुई है तस्वीरोपे--

और यहाँ पे काफी सारे मशीना भी दिखाई दे रहे है जो जिम के दिखाई दे रहे है यहाँ पे बहुत सारे लोग भी दिखाई दे रहे है और नीचे मे कुछ टाइल्स लगी हुई भी दिख रही है।

इस इमेज मे एक कैफे नजर आ रहा है जिसमे अंदर की साइड मे कुछ --

चेयर्स और टेबल लगे हुए है दीवार पे कुछ पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे है सामने में एक पानी पूरी का स्टॉल भी दिखाई दे रहा है और डस्ट्बिन रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इमेज़ मे एक स्टेज दिखाई दे रहा है जो किसी फंक्शन का नजर आ रहा है पीछे के साइड में कुछ पड़दे नज़--